इस फोटो में मुझे एक शादी का पंडाल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बहोत बड़ा प्लस का साइन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे बहुत सारी सजावट का सामान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे एक मीटर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी खिड़की दिखाई दे रही है इस फोटो में मुझे बहोत सारी बिजली की तार दिखाई दे रहीं --